यहां पे छत के ऊपर पंख लगे हुए हैं कुछ एल.ई.डी. लाइट् भी लगी हुई है।

यहां पर एक टेबल के ऊपर सफेद से कलर की --

यहाँ पर एक केले का पेड़ भी लगा हुआ है जिसके साइड में गन्ने के पेड़ भी बने हुए हैं ।

और एक व्यक्ति सेंट्रिग के ऊपर खड़ा पाइप रखे हुए हैं।

इसके आस-पास बहुत सारे और भी अलग-अलग प्रकार के मूर्ति रखी हुई है।

वह हरे कलर की कारपेट बिछाई गई है।